ये एक प्रतीक्षा करने की जगह है जहाँ बहुत सी कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। आगे लोग बैठे हुए हैं। दीवारों पर पिक्चर लगी हुई हैं।

दूर-दूर तक पहाड़ से भी दिखाई दे रहे हैं जो कि काफी धुंधले दिख रहे हैं। नीचे घास के मैदान हैं।

आजू-बाजू बहुत बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं। एक दीवार बनी हुई है जिसके सहारे सड़क बनी हुई है वहाँ से लोग जाते हुए और आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने एक दीवार भी बनी हुई --

यहाँ एक शीशा है। जिसमें एक आदमी बनियान पहने हाथ में फ़ो फोन लिए फोटो निकाल रहा है। पीछे एक लड़का और है जिसने सफेद रंग की बनियान पहनी हुई है।

यहाँ कुछ लोग हसते हुए फोटो खींचा रहे है जिनके आगे दो बाइके भी खड़ी हुई है और पीछे गुब्बाड़ो थे --

यहाँ मछलियाँ बेचीं जा रही है एक टप में मछलियाँ रखी हुई है काफी छोटी काफी बड़ी और बिछी --

पीछे छत पर काला रंग हो रहा है और बहोत सी लाइटेें लगी हुई हैं। नीचे का फर्श काला और लाल है।

यहाँ एक आदमी दूसरे आदमी के बाल काट रहा है उसके पास एक छोटी सी मशीन है जो कि काले रंग की है।

यहाँ काफी सारे लोग बाहर खड़े हैं। पीछे दुकानें बनी हुई हैं जो कि काफी बड़ी बड़ी हैं। बगल में एक नीले रंग का गेट भी दिखाई दे रहा है और एक लम्बा सा बांस भी रखा हुआ है।

दो आदमी आगे बैठे हुए हैं जिन जो एक पैर ऊपर करके बैठा है और एक अपने पैर पे पैर रख के बैठ --

यहाँ एक आदमी ए.टी.एम. से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है जिसने हं मेहंदिया रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है जो कि आधी बाजु तक की है। अन्दर एक आदमी मशीन की तरफ देखता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर लाइट पड़ रही है और --

एक ने क्रीम कलर की। नीचे तीनों ने लोवर पहनी हुई हैं। दो की लोवर पीले रंग की है और एक --

ये काले। पीछे दीवार का रंग आधा लाल और आधा पीला है। पीछे लाइट जल रही है और नीचे हरे रंग का फ़र --